यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के सेंटर मे एक स्टूल रखा है ।

लोहे की बाउंड्रीज बनी हुई नजर आ रही हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है खेत पर बहुत सारी घासें नजर आ रही हैं ।

ये एक नहर का फोटो है जहां पर एक पुल बना हुआ है।